बड़े मियाँ दिख रहे है और आसमान दिख रहा है जमीन दिख रही है पेड़ दिख रहे है तार दिख रहे है।

यहाँ आसमान दिख रहा है ज़मीन दिख रही है ज़मीन गीली दिख रही है पानी दिख रहा है पास में रस्सी दिख रही है रस्सी दिख रही है और नव दिख रही है झंडे दिख रहे हैं काफी--

कुछ बच्चे बैठे हैं कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे खड़े हैं।

तार दिख रही हमे आसमान दिख रही है।

ईंटो वाला घर दिख रहा है सेंट्रिंग बिछ रही है गिट्टी पड़ी हुई है और एक आदमी झुका हुआ खड़ा है एक आदमी जा रहा है और एक आदमी पीछे खड़ा हुआ है।